और एक ग्रीन कलर की टंकी दिखाई दे रही है।

और एक रथ बनाया हुआ है जिसमें लोग बैठे हुए हैं।

मशीनों का कलर येलो और ब्लैक --

और सामने दीवार पर एक घड़ी है।

जिसमें तीन मूर्तियां बनी हुई हैं।

जो कि काफी सुंदर मंदिर है।

ये एक फूलों की दुकान है।

और बिजली की तारें हैं खंबा हैं।

उसके ऊपर एक थाली रखी हुई है।

ये एक हॉस्पिटल है। डेंटिस्ट क्लिनिक है।